ये कुछ कैफे जैसा लग रहा है।

साइड में भी कुछ लकड़ी के समान पड़े हुए हैं जैसे बैट वगैरा।

पीछे में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

में एक तार नजर आ रहा है और नीचे में टाइल्स --

और अंदर में बहुत सारे बाइक हैं जिसमें रेड ब्लू कलर का नजर आ रहा है बाइक --

सीमेंट के बक्से लग रहे हैं बहुत सारे रखे हुए।

खिड़कियाँ नजर आ रही हैं बंद किए--

ग्राउंड जैसा लग रहा है बहुत ही बरा ग्राउंड है जिसमें छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं।

पास में ही साइकल गाड़ी रिक्शा ये सब चल रही है।

पीछे में दो कबर्ड नजर आ रहे हैं जहां पे यलो और ब्लू ग्रीन और ब्लू कलर का ब्लू कलर में एक आईना लगा हुआ--

पीछे में एक छोटा सा टैटू लगा हुआ है वह कुछ एंजेल जैसा टैटू है।

यहां पे एक दरवाजा भी बनाया गया है और वाल वहां पे ब्रिक्स के बने हुए हैं।

इसमें ओ लोग ऑफिस में काम करते हैं अ ऑफिस में कॉन्फ्रेंस होता है तो वहां पर जाते हैं।

जहां पे बहुत सारे फैंस वगैरह का कंपनी है।

कुछ टेडिज दिखाई दे रहे हैं।

दरवाजा ग्लास का लगा हुआ है।

और उसमें पुश लिखा हुआ है।

ये एक टायर का शॉप लग रहा है जहां पे कुछ पास में एल_सी_वी ट्रक लिखा हुआ है।

बहोत सारे टायर्स है और रेड कलर के रैक में --

और कुछ बलूंस दिख रहे हैं।

ये एक हॉस्पिटल है कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसा लग रहा है जहां पे तीन चार बेड नजर आ रहे हैं। और कुछ बीमार बेड पर लेटे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे अ व बिल्डिंग का ऑफिस का नाम दिया हुआ है एक साइन बोर्ड पे।

ये कुछ लक्जरी रेस्टोरेंट जैसा लगा रहा हैं जहां का इंटीरियर काफी कॉम नजर आ रहा है।

अ चार टेबिल है पास मे भी बहोत सारी टेबिल चेयर है जिसमें टिशु वगैरा है और कुछ लाइट्स दिए हुए--

अनेका पोस्टर्स का पेंटिंग है।

कुछ इंसान अपने लगेज लेकर जा रहे हैं औरत आदमी सब कुछ जा--

का पानी का टैंकी नज़र आ रहा है।

ये एक स्कूल का बिल्डिंग है जिसमें बहुत बड़ा करके लिखा हुआ है अ रानी रानीगांव क्लास ट्वेल्व स्कूल --

अं बालकनी के साथ व्हाइट कलर का बिल्डिंग है जिसमें रेड कलर का डिजाइन किया हुआ--

पीछे में प्रगति का स्कूल है।

ये कुछ ऑफिस जैसा लग रहा है जहां पे लिखा हुआ साइन बोर्ड बड़ा करके डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस ।

ये व्हाइट कलर का बिल्डिंग है काफी पुराना बिल्डिंग लग रहा है जिसमें बहोत सारे ब्लैक के पैचेस आ गए हैं।

कुछ पुरानी जगह लग रही है जहां पे बहोत ही बड़ा पत्थर है नीचे में छोटे छोटे पत्थर भी लगे हुए हैं।

ये एक सर्विस सनटर सेंटर है ये एक बाइक का सर्विस सेंटर लग रहा है जहां पे सर्विस सेंटर लिखा हुआ है टी_वी_एस का।

सैंपू है और कुछ हेयर कलर अ हेयर कलर और कुछ खाने का चीज है कोलगेट वगैरा सब नजर आ रहा है।